जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये एक बस स्टैंड है यहां पर बस खड़ी हुई है सफेद कलर की और लोग इसमें--

बहुत से लोग खड़े हुए हैं।

यहां पर टेबल और कुर्सियां भी रखी हुई है।

जहां के साइड साइड में सीढ़ियां बनी हुई है और काफी लोग यहां पर--

पार्लर क्लास है और जहाँ पर दो चेयर लगे हुए है काफी --

यहां पर बहोत सारे टायर रखे हुए हैं।

काले कलर के टायर रखे हुए हैं यहां पर--

मैं देख पा रही हूं यहां एक पेट्रोल पंप है।

टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर एक पानी की बोतल है और कुर्सी भी रखे हुए हैं।

मैं देख पा रही हूं कि यह बहुत बड़ा जगह है।

कुछ लोग यहां पर खड़े हुए हैं और कुछ लेडिस यहां पर खड़ी हुई हैं बैठी भी हुई हैं।

कुछ लोग भी यहाॅं पर दिखाई दे रहें हैं।

मैं देख पा रही हूं कि काफी पहाड़ी एरिया है।

काफी कलर की साड़ियां यहां पर टंगी हुई है मैं देख पा रही हूं यहां पर भगवान के एक फोटो भी लगे हुए है।

और एक लकड़ी का बना भी हुआ है खड़े होने के लिए।

काफी सारे पेड़ पौधे यहां पर है।